पंखा लगाया गया है जिसका कलर ब्लैक है।

इसके ऊपर बहुत सारी ट्रॉफियां रखी गई है। ट्रॉफियों का कलर गोल्डन कलर है।

इसके साइड में बहुत सारे ओटो अयोटो के डिब्बे रखे गए हैं।

यह एक मॉल का दृश्य है इस मॉल के साइड में बहुत सारे कपड़े रखे गए हैं कुछ लड़कियों के कपड़े भी दिखाई दे रहे हैं।

नीचे दरवाजे का कलर ब्लू है उसके साइड में एक शटर लगाया गया है।

नीचे तीन कुर्सियां रखी गईं है।

एक लड़की खड़ी है। जिसने रेड कलर का कपड़ा कपड़ा पहना है।

कुछ चप्पल का कलर रेड है। बहुत से जूते रखे गए हैं। जिसका कलर क्रीम ब्लैक व्हाइट हैं।

इसके नीचे बहुत सारी बैलूंस लगाई गई है साइड में एक बैनर खड़ा किया गया है।

कुर्सियों का कलर ब्लैक है इसके साइड में एक ऐ _सी लगायी गयी है।

चार शीशे लगाए हुए दिखाई दे रहे है एक घड़ी दिखाई दे रही है।

यह एक जंगल का दृश्य है इस जंगल में बहुत सारे पेड़ पौधे उगे हुए हैं जोकि काफी बड़े हैं।

इसके नीचे बहुत सारी घास उगी हुई है।

यह एक हवाई अड्डा का दृश्य है इसका नाम देवघर हवाई अड्डा है इसके ऊपर बहुत सारी ग्लास की खिड़कियां लगाई गई हैं।

आदमी खड़ा है जिसने ग्रीन कलर का टी शर्ट और ब्लैक जींस पहनी हुई है।

एक डी_जे का बॉक्स रखा गया है बहुत सारी लाइटें जल रही हैं।

साइड में एक दरवाजा लगाया गया है जो की ब्लैक कलर का है।